और इछ इधर फेस करके देख रहे हैं जैसे कि ये फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं।

है और एक हाथ और दो पैर निचे किये हुए है और एक हाथ जूता पहने हुए ऊपर किये हुए है पीछे में बहुत सारी कलर की।

को नीचे से उठाकर पिकअप में लाद रहे हैं। पिकअप में नीचे से एक बेंच लगा दिए हैं उसी पर चढ़ कर पिकअप में सब ये एक-एक बोरा लाद रहे हैं।

यहाँ पर कुछ पत्ता गोभी और केला संतरा सेब फल वगैरह सब्जी-उब्जी मिल रहा है। एक भाई साहब खड़ा हो कर ---

यहां पर एक छत एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर परसंद सोनपुर का मतलब बड़ा सा एक गेट है।

एक महावीर जी का प- प्रतिबिंब है। एक और आदमी बैठकर माइक पर कुछ बोल रहा है और उसके दो सामने जजमान बैठकर पूजा कर रहे हैं।

एक भाईसाहब चेयर पे बैठकर फ़ोन से बात कर रहे है मुस्कुराते हुए।

ये यहाँ पर देख कर ऐसा लग त रहा है कि इस दुकान का ओपनिंग है स्कूल का --